चम्मच दिख रही है और एक बहोत बड़ा दो कप दिख रहा है दो कप में दोनों में चाय है एक में चम्मच डली हुई है।

पेड़ बहोत सारे दिख रहे हैं धरती में धूल दिख रही है बहोत सारी चीजे लोहे का गेट और दीवारें दिख रहे हैं।

कांच की तरफ अपने आपको देख रहा है पीछे टावेल टंगी हुई है मटका दिख रहा है पानी का केन दिख रहा है।